यह ट्रैवलर एक वाइट रंग की मिनी बस है।

खड का दृश्य दिखाया गया है।

हमें एडिडास का और पूमा का शोरूम दिख रहा है यहां काफी दुकानें बनी हुई हैं।

इस तसवीर में हमें एक जिम का दृश्य दिखाया गया है।

रेस्टोरेंट का दृश्य दिखाया गया है।

यहां पर हम सड़क के ऊपर एक बस खड़ी हुई देख सकते है।

यहां पर हरे भरे पेड़ भी दिख रहे है।

अनेक मंजिलें बनी हुई दिख रही है।

यहां पर हम इस गेस्ट हाउस का गेट काले रंग में देख सकते है।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

और यहां पर दीवार पर एक घड़ी भी लगी हुई है।